और उसमें गोल्ड प्लस लिखा हुआ है।

सारे व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं।

डैम में पानी है।

दीवार का कलर है ग्रीन ।

और ड्रम भी दिखाई दे रहे है।

यहां पे एक रूम का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

उनपे बहुत सारा सामान टांगे हुए हैं।

नए घर का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

और दीवार भी दिखाई दे रहे हैं और गेट दिखाई दे रहा है।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

नीले रंग का आकाश भी दिखाई दे रहा है।

घर का कलर है सफेद गेट का कलर है ब्राउन --

लोहा में अल्वेस्टर चढ़ाया हुआ है।

एक लाल कलर पलटी दिखाई दे रही है।

एक वैन लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं।

व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लेजर लाइट जल रहे हैं।

लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन का भविष्य अब यहां।

गेट में सट्टर लगाया हुआ है।

व्यक्ति पानी से गाड़ी धो रहा है।

बहुत सारे व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं।

व्यक्ति लोग कराटा सीख रहे हैं।

यहां पे एक रूम का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

सी_सी कैमरा भी दिख रहे हैं।

और घर भी दिखाई दे रहे हैं।

दो ऑटो दिखाई दे रही है।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

घर में बहुत सारे फूल से डेकोरेशन किया गया है दीवार का कलर है सफेद।

कलर सफेद दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे राखी दुकान का एक दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

और ट्रेन दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रही है।

टंकी भी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे ए_सी लगाए हुए हैं।

दीवार का कलर है सफेद ब्लू लाल से पेंट किया हुआ है।

जो कि हरा कलर का है और प्लास्टिक टांगा हुआ है।

और दीवार में बहुत सारे पंखा लगाया हुआ है।

दुकान में बहुत सारे भगवान जी को फोटो चिपकाया हुआ है।

बहुत सारी चुन्दरी टांगा हुआ है।

बहोत सारे व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे केला का पौधा लगाया हुआ है।

सारे फूल फुलाए हुए हैं।

लाल कलर की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है।

बोर्ड पे लिखा हुआ है गंगा ज्वेलर्स।

और लाईट भी दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

और ब्लोरो भी दिखाई दे रहे है।

जोकि ऑरेंज कलर के है।

जमीन में टाइल्स लगाए हुए हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और दीवार भी बनाया हुआ है।

सारे बल्ब जल रहे हैं।